देखिये नाव है। आना कुछ नाव को पल्टा दी दिया गया है।

देखने में ये लग रहा है कि ये बस--

देखिए यह आसमान भी पूरा बदल किया हुआ है बारिश का मौसम है और पूरा यह एक जो --

- -की यहां पे तेल भरने के लिए पेट्रोल डीजल के लिए बनाया गया है लाइटिंग भी अच्छा है।

यह अंगूर है और देखिए ब्लैक अंगूर है ग्रीन अंगूर है एप्पल है।

बहुत बड़ा यह डैम जैसा ही दिख रहा है और यहाँ पर अच्छे लोग भी है नाव भी है और बोटिंग के लिए नाव चल रही है।

-- सूट किया गया है डिजायनिंग --

और देखेने मे ही लग रहा है बोहत गहरा पानी है।

बगल में सीडी वगैरा सामान वगैरा रखा हुआ है।